बगल में ही एक ट्रैन वाली ब्रीज़ भी है और जोकि खाली है।

ये दृश्य एक मैंरिज हॉल का है जहाँ --